ग्राउंड में एक बड़ा सा पेड़ भी है। साथ ही पेड़ के पीछे एक बिल्डिंग है जिसका रंग पीले कलर का है।

यह एक ग्राउंड है जोकि घास से ढाका हुआ है और छोटे-छोटे सफ़ेद रंग के पिलर्स बने हुए हैं और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी हैं ग्राउंड के उस पार एक लाल और सफ़ेद रंग की दीवार भी है।

हॉस्पिटल के बहार चार रंग के डस्टबिन रखे हुए है ब्लैक ब्लू येल्लो रेड हॉस्पिटल के बहार प्लस का साइन बना हुआ हैं और झंडे चिपके हुए हैं।

यह एक कोचिंग क्लास है जहां पर दीवार पर सफ़ेद रंग है।